और ये मंदिर का गेट है जो उजला कलर और लाल कलर से पेंट किया हुआ है।

और यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है बाए टु गेट टु फ्री लिखा हुआ है बहुत सुन्दर स्टोर है |

फील्ड मे घास भी है | हरा-भरा है |

बहुत अच्छा लग रहा है रहा है संध्या का समय है देखने में सुंदर --

और यहाँ बाइक भी बाहर में खड़ा है और महिलाएं और पुरूष भी आए हुए हैं।

और ऑफिस है अंदर इस लिए बाहर ए.सी. वाला लगा हुआ है ब्लोवर ।

किस सम समुदाय के लोग हैं।

और बिल्डिंग भी दिख रहिया रहा है बगल में ऊपर असमान दिख रहा है बादल छाया हुआ है।